यह दुकान है जहाँ पर अलग अलग वैरायटी के अलग अलग प्रोडक्ट्स रखे हुए है और कुछ पैकट्स है वो भी यह दुकान में रखे गए है और कुछ कैंडी के डब्बे है और पेन वेगारा है एक आदमी है।

और यहाँ पे कुछ बोतले भी रखी हुई है अलमारी पर भी बहुत सारा समान है और पंखा भी लगाया गया है।